उसके बगल में एक आदमी ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए बैठा हुआ है।

ओर बगल में एक फल का दुकान लगा हुआ है जहां एक एयरटेल फोर जी का बोर्ड लगा हुआ--

और अंदर की तरफ एक पिंक कलर की शर्ट पहने हुए लड़का अंदर जा रहा है।

यह एक क्लास रूम का दृश्य है जहां ढेर सारी बेंचे रखी हुई है।

उनका कलर ब्लू है और सामने की तरफ एक ब्लू कलर पर्दा लगा हुआ है।

जिसके बगल में वाइट कलर का एक इनवर्टर रखा हुआ है।

और बाकी की कलर ब्लैक है।

और सामने की तरफ एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ रखी खी हुई है।

यह एक गुफा का दृश्य है।

और बगल में एक बाइक खड़ी हुई है।

यह एक कमरे का दृश्य है जहां सामने की तरफ हरी कलर की दीवाल है।

यह एक गमले दुकान का दृश्य है जहां ढेर सारी गमले--

और उसके सामने एक पेड़ लगे हुए हैं।

अ उसके सामने व्हाइट कलर की एक पटरा भी लगा हुआ है।

यह एक डांस ग्रुप का दृश्य है।

यह एक गेट का दृश्य है।

जिसमे लाइफ इस ऑल अबाउट बैलेंस का पोस्टर लगा हुआ है।

उसके बगल में चॉकलेट रखी हुई है।